बहुत सरे चित्र बने हुए हैं।

ये एक दोकान है जिसमें बहुत सारे सामान है फोनपे है बहुत सारे।

बहुत सारे कलर के रंग-बिरंगे --

साइकिल है बहुत सारे आदमी है।

एक पहाड़ी एरिया है जिनमें बहुत सारे पत्थर हैं बहुत सारे पेड़-पौधे हैं।

एक आदमी गमछा लिया हुआ है।

ये एक मॉल है मॉल का नाम हाइपर सुपर मार्केट है जिसमें बहुत सारे कल सामान मिलते हैं फार्च्यून राइस ग --

कार है एल.ई.डी. बॉक्स है बहुत सारे पेड़ है।

सामने एक नदी है नदी के उपर एक बड़ा सा पुल है सामने एक चिमनी है बहुत सारे --

लगा हुआ है बहुत सारे डिब्बा हैं।

पेड़ लगे हुए है बहुत सारे सामान है इसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

आदमी है एक गाड़ी वो रेड कलर का है।